में यहाँ पर देख पा रही हु ये एक क्लासरूम है जिसमें देखिए बड़ी बड़ी सी विन्डो लगी हुई है।

मैं यहाँ पर देख पा रही हु एक दीवार बनी हुई है और दीवार पर एक मूर्ति लगी हुई है जिसमें की एक घोड़ा और उसपे एक --

मैं यहाँ पर देख पा रही हु ये एक मंदिर दिखाई दे रहा है और मंदिर के अंदर मूर्ति भी रखी हुई नज़र आ रही है।

और यहाँ पर सामने एक डमी खड़ी हुई है जोकि एक छोटी सी बच्ची की तरह फ्रॉक पहिने हुए नज़र आ रही है।

में यहाँ पर देख पा रही हु यह एक मस्जिद दिखाई दे रही है और देखिए इसमें यहाँ पर एक उच्ची सी मस्जिद की मीनार दिखाई दे रही है।

का टॅग भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर दो टेडीबियर भी लगे हुए दिखाई दे रहे है और कुछ औरते भी नज़र आ रही है।